मूर्तियों के बाहर डलिया में बहोत सारे फल है।

ऊपर कि तरफ़ मंदिर में लाइटें जल रही हैं।

इसमें बादल भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं।

बेंच के ऊपर बिस्कुट के पैकेट भी रखे दिखाई दे रहे हैं।

इसकी जमीने टाइल्स से बनी हुई है।

बाहर से कुछ लोग टहलते दिखाई दे रहे हैं।